ये एक सब्जी की बड़ी दुकान का पिक है यहां बहोत सारी सब्जी रखी हुई दिखाई दे र--

उसके पार एक दरिया बहता हुआ दिखाई दे रहा है और छोटे छोटे पहाड़ भी दिखाई--

इस पिक में एक छोटा सा घर बना हुआ दिखाई दे रहा है।

इस पिक में हरा भरा पार्क दिखाई दे--

इस पिक में एक का रास्ता दिखाई दे रहा हैं जो रोड हैं उसके आगे बहोत बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ बेड भी बने हुए लगे हैं।

यह एक छोटे से सैलून का पिक है ये बाबर की दुकान है।

और दो रेफ्रिजनेटर दिख रहें हैं जिसमें पानी की बॉटले और कोल्ड ड्रिंक रखी हुईं हैं।

पैनल बना हुआ है उसपे माता की फोटो लगा रखी है।

जिसके ऊपर आर्मी जिनकी फौजियों की गाड़ी लदी हुईं हैं वो लेकर जा रहीं हैं और डस्टबिन लगे हुए हैं।

और गद्दो पे बड़े बड़े दो बॉल पड़े हुए हैं।